मुझे इस फोटो पर एक गार्डन पर बनी हुई बच्चों की फिसल पट्टी दिखाई दे रही है।

सुंदर है वह इसमें तरह-तरह के पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं।

मुझे इस फोटो पर एक बड़े से ईस्टेज में तीन लड़कियां नाचती हुई नजर आ रही है।

लोग बैठे व खड़े हुए हैं इस लोक सेवा केंद्र के सामने बहोत ही खराब रोड है।

मुझे इस फोटो पर एक दुकान नजर आ रही है।